दिखने में बहुत अच्छी लग रही है।

कौन सा टंकी दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

आसमान दिख रहा है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा --

ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। हरा-हरा पेड़-पौधा दिख रहा है।